उंउं गिभ वे रहा है बगल में एक शीशा वाला काउंटर है और राउंड उससे भी शीशा वाला कुछ है।

यह पिक किराना दुकान है यहां पे एक बोर्ड है बोर्ड के अंदर चार्जर भी लगा हुआ यहां पे बच्चों के काफी सारे कार्स खिलौने टॉय बॉल बैट ।

देख रहे हैं और खरे भी है और सामने बहुत सारे कार है।

यहां पर बहोत सारी दिल किसी का नाम लिखा गया है।

येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है नीचे और ये सब का दाढ़ी बनाया जा रहा है।

उम्म लकड़ी का लोहे के चक्के वाली बैल गाड़ी--

खंभे है व्हाइट कलर के है यहाँ पे एक हवाई अड्डा है यहाँ पे दो व्यक्ति देख रहे है जो उसकी बच्ची है एक --

यह एक रेस्टोरेंट है जहां पे बहोत सारे टेबल रखे हुए हैं टेबल के साइड में कुर्चि भी रखे गए हैं।

बगल उसके पीछे एक आदमी है जिसके आगे सीसा लगा हुआ है सीसा ब्लू कलर का लगा हुआ है।